ये जो गोल आकर का बना हुआ है हम इसे स्तम्भ के नाम से जानते हैं। ये स्तम्भ में गौत्तम बुद्ध के हड्डियों को दफनाया गया है और इस स्तम्भ पर ना ही हम लोग को बैठेने दिया जाता है ना ही इस पर चढ़ने दिया जाता है। इस स्तम्भ के साइड साइड से बहोत ही पतले-पतले रास्ते बने हुए हैं जिन रास्तो में हमें उसी रास्तो से जाने की --

यह पार्क बनारस का ही है। यहाँ पे आर्मी के बच्चों को ट्रेन किया जाता है और पुलिस में जाने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। यह इस पार्क में बच्चो को सुबह से ही बुला लिया जाता है चाहे वो धुप रहे बारिश रहे सभी में उनको ट्रेनिंग का ट्रेनिंग कराया जाता है।

और यहाँ पे बनारसी साड़ी का लुक ही बिल्कुल अलग रहता है यहाँ पर बाहर से जो भी आता है वो बनारसी साड़ी जरूर ले कर जाता है क्यू क्यूकी यहाँ की बनारसी साड़ी और किसी देश में मिल ही नहीं सकती यहाँ पे बनारसी साड़ी का महत्व बहुत ही ज्यादा है|

यात्रा करने के लिए तथा घर जाने के लिए बस पकड़ने आते है।